बहुत सारे आदमी भी है और एक कार भी है और बॉस भी है साइड में और सजवाट भी किया हुआ है थोड़ा सा और भी बोहुत कुछ देखने को--